और एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है कुछ बच्चे बूढ़े लड़के जवान‌ औरते‌ है।

इस चित्र में सामने में एक सीढ़ी है ऊपर में कुछ दुकानें हैं बोर्ड लगी हुई है।

नीचे जाने के लिए सीढ़ियां पोस्टर भी लगी हुई है ऊपर में भी पोस्टर लगा हुआ है।

अ जो कि गिलहरियां की जैसी है और ये पेड़ पर बैठकर देख रहे हैं एलोवेरा का बड़ा-सा पौधा भी दिख रहा है।